पुलिस भी चेकिंग कर रही हैं।

ये एक टावर है जहाँ पर आसमान दिख रहा है जो वाइट वाइट पानी जैसा कलर जैसा दिख रहा है आस-पास पेड़ पौधे है।

पौधे और पत्ते गिरे हुए हैं। यह यहाँ पर कुछ ढूंढ़ने के लिए निकले है। यह जंगल दिखने में बहोत खूबसूरत दिख रहा है जो खुला आसमान है।

ते व्हाइट कलर के ऊपर से फ्रॉक है। नीचे रेड कलर का स्टैन्ड बना हुआ है जहाँ लाइट ऑफ़ है। बस उनके ऊपर लाइट आ रही है। वो परफॉरमेंस कर रही है।

पीछे कांच लगा है जिसमे जो बैठे हुए सामने के लोग वो जस्ट सब सामने ही दिख रहें हैं।

यहाँ एक शॉप है। शॉप के सामने बहोत सारी बाइक्स ख़डी हुई हैं।

एयरटेल का बोर्ड भी लगा है।

जस्ट सामने बड़ी माला बनी हुई है बिल्डिंगो की। आसपास ल लड़किया घूम रही है व्हाइट ड्रेस । व्हाइट टॉप और ब्लैक ड्रेस --

और साइड मे इसमे बोहोत से टेढ़े मेढ़े चढ़ाव दे रखे हैं।

ये खुला मैदान है जहाँ पर पूरा ऊपर खुला आसमान भी है।

लड़की अपना डांस परफॉरमेंस दिखा रखी है।

जिसने पूरी रेड कलर की ड्रेस पहन रखी है।

यहाँ एक ब्रिज बना हुआ है।

ये एक गौशाला के लिए एक बड़ा सरा बैकग्राउंड बना रखा है।

जिसमें ग्रीन कलर की पुती हुई एक सीढ़ी खड़ी हुई है।

पिंक रेड ग्रीन कलर से इसमे --

यहाँ पर बस स्टॉप कार स्टॉप जैसी क बसे खड़ी हुई हैं। बड़ी सी होटल रात का टाइम है।

ये एक सिनेमा होटल है जहां पर तिरंगा फहराया गया है।

तिरंगे का सम्मान कर रहे --